एक बाल्टी भी रखी हुई है और एक जूता भी है टायिल्स भी लगी लोहे की बोरी है यहाँ पे और लाइटे है।

यहाँ पे एक लड़का फोटो खीच रहा हैं उसके दाढ़ी हैं उसने एक टी शर्ट पहन रखी हैं उसके हाथ में स्मार्ट वॉच हैं।

लोग भी खड़े हुए वही व्हाइट कलर की स्कुटियाँ भी स्कूटी भी खड़ी हुई है और बहुत सारी स्कुटियाँ है यहाँ--